ये कोई छोटा सा गांव है बहुत ही हरियाली है यहां पर बहुत ही प्यारा लग रहा है ये गांव यहां सबके छतो में छप्पर डाली गयी हैं। यहां सामने कोई पहाड़ है जिस पे से फोटो क्लिक किया गया है।

बहुत ही प्यारा हैं सामने एक नदी लग रहा है बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है ये छोटा सा गांव का बाहत ही प्यारा गांव--

यहाँ पे सामने एक लोहे का सपोर्ट के लिए बना हुआ है कुछ बोहोत सारे लोग यहां पे पानी पी रहे है उस लोहे को पकड़ कर बोहोत ही साफ पानी लग रहा हैं।